यह चित्र एक बिल्डिंग का हैजो ब्लॉक एक ही बिल्डिंग हैवहां पर कपड़े टंगे हुए हैंलाइट के तार दिख रहे हैंखंबा दिख रहा है।